जोकी-की नदी में में जाके गिर रहा है यहाँ पे एक छोटी सी रोड दिखाई दे रही है कुछ बीच में पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं।

पीछे बहोत सारे घर दिखाए दे रहे हैं और बहोत सारा पेड़ भी दिखाए दे रहे हैं ।

जैसे की मै देख रही यहाँ पर एक अ-अ-अ रोड दिखाई दे रही है जिसके बीच में एक डिवाइडर है यहा पर बहोत सारी गाड़िया चल रही है।

जैसे की हम दिख रहे है कि यहाँ पर एक शादी की होल की इमेज दिखाई दे रही है और यहाँ पर सामने हमें एक स्टेज दिखाई दे रहा है जो की बहोत सारे अलग-अलग फुल से सजा हुआ है।